यहा एक किल्ला दिखाई दे रहा है। अँड एक ऑरेंज कलर का तिरंगा दिखाई दे रहा है। अँड एक ऑरेंज कलर की सीडी दिखाई दे रही है एक गेट दिखाई दे रहा है।

यह खुला आसमान दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ पत्थर दिखाई दे रहे है पानी दिखाई दे रहे है कुछ पाइप दिखाई दे रहा है।

यहा पर ग्रीन कलर का मैदान दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक रोड दिखाई दे रही है।

एक जंगल दिखाई दे रहा है। यहा सुखी लकड़िया दिखाई दे रही है। कुछ टेंट दिखाई दे रहे है।

यहा एक गार्डन देखाई दे रहा है। यहा कुछ लोग दिखाई दे रहे है। यहा कुछ झूले दिखाई दे रहे है। कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।